यहाँ पे काफी लोग आते हैं यहाँ पे सुबह शाम यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता यहाँ के यह फ्री ऑफ़ कॉस्ट आ सकते है और आप टहल सकते है और रह सकते है।